बिल्डिंग के बाहर एक खाली जगह पे--

प्लेट्स एंड टिशू पेपर पड़े हुए हैं।

नदी के बीच एक पूल है।

उनके खाने के लिए भी समान पड़ा है।

इसके हाथ में एक कैमरा हैं।

घर के आगे बहुत सारे व्यक्ति खड़े--

यहां काफी सारे बेड लगे हुए हैं।

और कई सारे फ्रेम भी--

यहां के गत्ते भी पड़े हुए--

यहाँ नीचे काफी सारे पत्ते गिरे भी हुए है और कई सारी--

इसमें से कुछ लोग जेंट्स है और--

सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

जहां बहोत सारे टॉयज पड़े हुए हैं।

यह लोग अपनी फोटो खींचवा रहे है।

यह अपना काम कर रही--

और बोर्ड के ऊपर कृषि विज्ञान के अंदर अबोहर लिखा हुआ--

यह लोग आपस में बात कर रहे--

टोल टैक्स के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ--

यहां दो खिड़कियां भी बनी हुई --

वेह आदमी एलीफेंट पर बैठा--

यहां कुछ सीढ़ियां भी बनी हुई--

और बैठने के लिए चेयर्स भी हैं।

इन सभी के ब्लैक यूनिफॉर्म डाली हुई है।

और जहां एक बाइक भी है।

यहां कुछ पत्ते भी उगे हुए हैं।

सामने दो आदमी भी खड़े हैं।

यहां दो बाइक्स भी खड़ी हुई हैं।